उस नदी के किनारे पुल बना हुआ है।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

बीच में रोड गया हुआ है इसके बगल में भी एक केयर की दुकान है।

और दीवारों में बहुत सारे फ्रेम लगे हुए कुछ सजावटी सामान रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक बहोत ही खूबसूरत व्हाइट कलर का मंदिर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें बहुत ही बड़ी नदी का दृश्य दिखाया गया है।

दीवार में टी_वी लगी हुई है और उसके नीचे कुछ भगवान जी की फोटो लगी रखी हुई है आगे की तरफ शीशा लगा हुआ है।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

बहुत सारी मिट्टियां पड़ी हुई है पीछे साइकिल और एक्टिवा खड़ा हुआ है।

कुछ कफ सेट है कुछ चाय सेट है और आगे की तरफ कटोरियाँ रखी हुई हैं।